आसपास कुछ सीनरी और पोस्टर्स लगे हुए हैं और पूरे रूम को व्हाइट कलर की लाइटिंग से डेकोर किया--

बहोत सारे छोटे छोटे पौधे लगे हैं जिनको बहोत ही अच्छे से कटिंग की गई है।

यहाँ पर तिरंगा झंडा लहरा रहा है और यह किसी--

पेपर की तरफ भी बहुत सारे ड्रॉयज और अलमारी है और गैस स्टॉप है गैस स्टॉप के ऊपर एक--

यहाँ पर बहुत सारे घर एक रो में बने हुए हैं उनके सामने से एक रोड गई है और रोड के साइड से ही एक पूरा ढलान वाला --

और आसपास में कुछ टेबल्स और चेयर रखे हुए हैं।

और पीछे की तरफ बहोत सारे घर बने हुए है जिनकी लाइटिंग दिख रही--

जहाँ पर कार सुधर रही है कार को सुधारने का गैरेज वहाँ वो सिर्फ वो--

यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ दिख रहे हैं उनपे बहुत सारे पेड़ लगे हुए--

ऊपर की तरफ अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक रखी है जैसे अलग अलग तरी--

यहां पर बहोत सारे दोनों तरफ घर बने हुए हैं औ घरों के बीच में--

एक बोर्ड लगा है इलेक्ट्रिक बोर्ड जिसमें ये मशीनों के बाहर कनेक्ट है।

और कुछ पेड़ में रेड और ग्रीन कलर के फूल भी आ रहे हैं।

और इसके आइए साइड में भी बहुत सारी शॉप हैं और--

वीडियो से नीचे की तरफ उतर रहे हैं जिनके हाथ में कुछ सामान है और शॉप के ऊपर भी शॉप बनी हुई है और इनके जो पोस्टर्स और बैनर --

और चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पैर पेड़ लगे हुए हैं और सूर्योदय हो रहा है सामने की तरफ से और जो घर है उसे पीले और लाल कलर से पेंट किया--

इसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हुए--

और कुछ बड़े पेड़ भी इसके सामने की तरफ लगे हैं और यह बहुत ही--

कुछ मेन गेट कुछ ग्लास लगे हैं विंडो में औ--

और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं और एक व्यक्ति--

पेड़ पौधे और घास लगी हुई है जो पूरा सामने की तरफ है।

सफेद और ब्लू कलर से बना है और स्टेज पूरा पिंक कलर का है।

यहां पर एक सोफा है और उसके आसपास और भी सोफे रखे हैं और उनके सामने एक ब्लैक कलर की टी टेबल रखी हुई है और इसके पीछे कुछ गमले रखे हैं जिसमें छोटे--

पौधे लगे हुए हैं इनके पीछे एक ओपन विंडो है।